यहां पे ऑनलाइन बुकिंग तथा होम डिलीवरी का सुविधा दिया गया है।

कई सारे लाइट जगमगा रहे--

इस चित्र में हमें एक विजिटर प्लेस को दिखाया गया है जहां पर कई सारी इमारते बनी हुई दिख रही है।

साइकिल भी रखी हुई है।

इस चित्र में एक नदी और पहाड़ का जिक्र किया है किया है जहां पे एक व्यक्ति पत्थर पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

इनका समय दिखाया गया है धूप खिली हुई है।

इस चित्र में हमें एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है।

आस पास में हरियाली छाई हुई है।

दिन सुबह का दिन दिख रहा है धूप खिली हुई है।

साथ में कई सारे वाहन रुके हुए हैं कुछ बहन का आना जाना हो रहा है।

एक व्यक्ति जो दुकान के अंदर जाता हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक मस्जिद का जिक्र किया गया है यहां पे एक प्रधान मौलाना कई ज्ञान की बातें बता रहे हैं।

एक रैक को भी दिखाया गया है लाइट जली हुई है।

रेड और व्हाइट कांबिनेशन का यह बिल्डिंग दिखाया गया है।

एक कार का स्थाई रूप से रुका हुआ दिख रहा है।

साथ में आसपास में और सारे बिल्डिंग प्रतीत हो रहा है।

आस पास में देख के हम समझ सकते हैं अच्छा खासा सफाई--

इस चित्र में हमें एक प्लेग्राउंड को दिखाया गया है जिसके बाईं साइड में कई सारे घर को भी दिखाया गया है।

एक साइकिल को दिखाया गया है।

एक लाल रंग का पर्दा भी हमे दिख पा रहा है।

नो आस पास मे बात कर रही है।

ये हमें साफ साफ दिख रहा है।

यहां पे शीशा का एक दीवार है।

बहुत सारे ट्रैफिक जाम है।